मुझे यहां पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा हैं।

मुझे यहां पर एक सड़क दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां पर कुछ लोग दिखाई दे रहा हैं।

मुझे यहां पर बहोत से पलंग दिखाई दे रहे है।

मुझे यहां पर एक एकेडमी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक बाइक दिखाई दे रही है।